ये जो है कप हो या फिर ग्लास हो जो भी हो कप या ग्लास जिस चीज़ का हो स्टील का हो या फिर शीशे का हो जिस चीज़ का हो देखने से तो स्टील का लग रहा है लेकिन इसे अलग-अलग प्रकार --

यात्री में जाकर रुक सकते हैं वहाँ कुछ विश्राम कर सकते हैं वहाँ रुक--